कुर्सियों का कलर लाल है और एक कुर्सी के ऊपर एक कोट टंगा हुआ है जो नीले कलर का है।

सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी है जिसमें शीशा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ कुछ पेड़ खड़े हैं और एक रोड पर गाड़ी दिखाई गई है।

पीछे की तरफ एक खंभा गड़ा है और बिजली की तार दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो के अंदर एक रूम दिखाया गया है जिसमें ऊपर एक लाइट लगी हुई जो सफेद कलर की है।

प्लेट के ऊपर कुछ चम्मच रखी हुई दिखाई दे रही हैं और उसमें एक छोटी सी कटोरी रखी है कांच की।

इस फोटो के अंदर एक बड़ा सा मंडप दिखाया गया है शादी का।

इस फोटो में सामने एक ट्रक खड़ा है जिसके अंदर फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर ट्रेडमिल मशीन दिखाइ है है जिनके ऊपर एक लड़का बैठा है जो हाथ में फोन लिए हुए है।

यहां पहाड़ के ऊपर कुछ झाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

सामने की तरफ एक डिवाइडर बना हुआ है जो टूटा हुआ है उसपे मट्टी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

सामने एक लड़के ने हाथ में रोड ले रखी है जो कि पुल अप मार रहा है।

ऊपर की तरफ कुछ रस्सियां लटकी हुई है जोकि एक लोहे के पाइप में लटकी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति ने हाथ में पेंसिल ली हई है और कॉपी ली हुई दिखाई दे रही है।

सामने दीवार पर एक पंखा लगा हुआ और एक घड़ी लगी हुई दिखाई दे रही है।